जहां बहुत सारी साइकिले दीवाल पे टंगी हुई है।

सीढ़ी भी है एक आदमी भी है।

पीछे स्विग्गी लिखा हुआ है।

सीट का कलर रेड है।

यह एक टावर का दृश्य है।

बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

एक स्लाइडर रखा हुआ है।

सामने दुकान है शटर का कलर ब्लू है सीढ़ी है जिसका कलर सिल्वर है।

ग्राउंड में पेड़ पौधे हैं।

गाड़ी का कलर ब्लैक है एक का ब्लू ।

इसमें शीट लगा हुआ है प्लोथीन--

पंडाल का कलर पीला और रेड में है ।

एक सामने कैप पहना आदमी साइकिल चला रहा है ऊपर पंखे हैं बहुत सारे लाइट है।

यह एक सैलून के अंदर का दृश्य--

यहां ऊपर मे बहुत लाइटे लगी हुई है।

सीढ़ी से एक लड़की उतर रही है सामने दो लड़के खड़े हैं।